और दीवाल के ऊपर कैलेंडर भी लगे हुए जो--

जिसमें कि उजले रंग का रैक लगा हुआ है रैक के बगल उ बगल में काले रंग की कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यह किसी शादी के घर का सजावट लग रहा है यहां बहुत सा सुंदर सुंदर लाइटिंग लगाई गई है।

मैदाने के चारों तरफ बिल्डिंग और मकान बना हुआ है हरे हरे पेड़--

और उनके दीवार से वो ब्लू कलर के हैं बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सोनार का दुकान लग रहा है जो की--

पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि हरे भरे हैं पार्क बहुत ही बड़ा है और सुंदर दिखाई दे रहा है।

हॉल में एक आदमी कुर्सी पर बैठा है एक आदमी खड़े हैं।

ये कोई होटल है जहां की इडली मिलता है इस दुकान के आगे मिस्टर इटली का बोर्ड लगा हुआ है।

घर का कलर बहुत अच्छा है सुंदर है।

लोग देख रहे हैं और ये काम छत ढालने का काम कर रहे हैं बहुत ही ऊंचा है और छत पर ढेर सारे सामान सब भी हैं।

जोकि बहुत पुरानी लग रही है और इसके बीच से कुछ पतले से रास्ता गई है।

ये ल बहुत ही बड़ा सा फील्ड लग रहा हैं।